मंदिर में रेलिंग भी लगाया गया है और टाइल्स भी लगाया गया है।

यह एक बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है और यहां पर सफेद और नीला कपड़ा से सजाया गया है।

और यहां पे बहुत छोटा छोटा आरे भी दिखाई दे रहा और बगल में झाड़ी भी दिखाई दे रहा।

और इहा दीवार में बहुत सारा तार भी दिखाई दे रहा --

बहुत सारा लाइट भी लगाया गया है और रूम में खिड़की बनाया गया है।

यहां पे शीशा में मछली रखा गया है और रूम में कुर्सी भी है।

यह एक फील्ड का दृश्य है फील्ड का मट्टी लाल दिखाई दे रहा है।

और यहां पे बहुत सारा सामान रखा गया है।

गाड़ी भी दिखाई दे रहा और यहां पे बहुत सारा झंडा भी गाड़ा गया--